एक पॉट का कलर पिंक और ग्रीन है।

एक पॉट का कलर लाल और ग्रीन है।

सब लड़की लोग लाइन से बैठा हुआ है।

इस फोटो में हमको एक गेट दिखाई दे रहा है।

ऊपर हम लोगों को बहुत ज्यादा बादल दिखाई दे रहा है।

यह फोटो में हम लोगों को एक बिल्डिंग दिखा दे रहा है।

यह एक फ्रीजर भी दिखाई दे रहा--

इस फोटो में हम लोग एक ग्राउंड दिखाई दे रहा--

बीच में एक बड़ा वाला कैंप है।

एक इंसान कुछ खाने के लिए बना रहा--

पीछे बहोत लंबा लंबा गच्छी भी दिखाई दे रहा--

बहुत ज्यादा घास और पत्ता भी दिखाई दे रहा है।

इधर पे एक चार फ्लोर की बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

यह पूरा खाली क्लासरूम है यहा बहुत सारे बेंच और डेकस हैं यहा एक टेबल और चेयर भी लखा हुआ है।

सब को पिंक कलर का होल्डर में रखा है।

ये फोटो में हम लोग को एक कच्चा रोड दिखाई दे रहा है।

पीछे बहोत ज्यादा घर भी दिखाई दे रहा है।

बहुत ज्यादा गच्छे भी दिखाई दे रहे।

इस फोटो में हम लोग को एक बड़ा घर दिखाई दे रहा --

ये सब प्लास्टिक का फूल दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में हम लोगो को एक रोड दिखाई दे रहा है।

में बोहत बड़ा बड़ा गाची दिखाई दे रहा है।

पीछे हम लोग को बहुत बड़ा बड़ा गछी दिखाई दे रहा है।

पीछे हम लोग को बहोत बड़ा बड़ा पहाड़ डिखाई दे रहा बहोत जंगल दिखाई दे रहा है लंबा लंबा पेड़ है।

हम लोग को एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है।

ये पेट्रोल पंप के ऊपर इंडियन ऑयल लिखा हुआ है।

एक ऑफिस भी दिखाई दे रहा है।

दो इंसान वहां बैठा हुआ है।

पीछे बहुत ज्यादा मिठाई का बॉक्स रखा हुआ है।

ये घर का छत तो ग्रीन कलर का है।

उसके पीछे बहुत ज्यादा गछ्छे दिखाई दे रहा।